तो गाइस मस्त है यहाँ व्यू बढ़िया है देखो थोड़ा यहाँ आओ घूमो फिरो गुब्बारा वुब्बारा लगा हुआ है और रूम को बढ़िया सजा के रखे हुए है।

बैकग्राउंड पता नहीं किसका ओ मंदिर बना हुआ है मस्त दिख रहा है जो महिला है वे खुबसूरत दिख रही है।

--और उससे बगल में पंचर टायर है और टुटहा फुटहा गाड़ी दिख रहा है इसको बना रहे हैं।